दिए गए इमेज पे बहुत ही तस्वीर अ दिखाई दे रही है जिसमें झोपड़ी बनी हुई है उसके आगे --

हरे रंग का चादर है उसने ब्लैंकेट लाल रंग का ले रखा है रूम के परदे पिले हैं रूम की दीवार सफ़ेद रंग --

और अ दो औरतें खड़ी हैं जो अ जिसने एक लाल रंग की साड़ी पेहनी हैं दूसरे ने पीले रंग की --

दिए गए चित्र में दो आदमी दिखाई दे रहे हैं जो इंजीनियर का काम करते हुए नज़र आ रहे हैं एक ने लाल रंग की जैकेट और दूसरे ने नीले रंग की जीन्स पहनी हुई है ।

अ उसपे अ छत है और दूसरे की लाल रंग की छत --

और पीछे अ कई सारे लोग हैं जिन्होंने सफेद रंग की टी-शर्ट पहन --

एक साइकिल भी नज़र आ रही है। सफ़ेद रंग का एक कपड़ा --

अ अमरुद है तरबूज है अ मौसम्बी है।

दिए गए चित्र में रेलवे स्टेशन की पटरियां नज़र आ रही हैं जिसमें कई सारे पत्थर भी नज़र आ रहे हैं।

अ अ आ रहें हैं जो हैंड-वॉश कर रहें हैं और सामने एक बिल्डिंग भी नज़र आ रही --

दिए गए चित्र में कई लोग योगा करते हुए नज़र आ रहे हैं और सब के पास योगा मेट भी हैं।

दिए गए अ चित्र में पार्टी का एक वेन्यू नज़र आ रहा है जिसमे बहुत ही सुन्दर तरीके से सजाया गया है।

सामने एक पे पैंटिंग हैं जिसमे दो कुर्सियां भी नज़र आ रही हैं एक सिल्वर कलर में हैं दूसरी लाल कलर मे है।

और कई सारे गमले पेड़-पौधे नज़र आ रहे हैं खुला आसमान नज़र आ रहा है ढेर सारा पानी भी नज़र आ रहा है ।

मुझे चित्र में एक बैडरूम नज़र आ रहा है जिसमे डार्क ब्राउन कलर का बेड लगा हुआ है उसमे लाइट और डार्क कलर में चादर बिछ --

और एक अ पीछे एक स्टेचू भी नज़र आ रहा --

कई कलर हैं जैसे अ फ़िरोज़ी हैं सफ़ेद रंग की है अ लाल रंग की है।